इस चित्र में एक पूल दिखाई दे रहा है। जिसके नीचे से पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है तथा कुछ घास भी दिखाई दे रही है। पूल के ऊपर की तरफ ग्रील लगी दिखाई दे रही है जो की पूरी रूप से लोहे की बनी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक नदी बहती हुई दिख रही है। इस नदी के दाए और बाए तरफ घास और पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे है तथा ऊपर की तरफ एक लोहे से बनी हुई कुछ चीजे दिखाई दे रही है।

इस चित्र में किसी चीज के ऊपर कुछ मछलियाँ रखि हुई दिखाई दे रही हैं मछलियों की संख्या दस से अधिक दिखाई दे रही हैं।

वह फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन व्यक्ति के पीछे की तरफ एक व्यक्ति पिली शर्ट तथा काली पैंट में दिखाई दे रहे हैं।

लाल रंग की एक पुस्तक है वह कुछ बताते हुए दिखाई दे रहे है तथा ऊपर की तरफ एक फूलों से एक बड़ा गमला लटका हुआ दिख --

क्या चित्र में कुछ व्यक्तियों का समुह दिखाई दे रहा है जिसमें की ज्यादा लोगों ने लाल रंग का कुर्ता पहने हुए दिख रहे हैं जिसमें से एक व्यक्ति ने अपने सर पर लाल रंग के कपड़े से बांध रखा --

तथा एक व्यक्ति पेपर पर कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं और एक अन्य व्यक्ति खड़ा दिख रहा है क्योंकि पेपर में कुछ पढ़ते हुए दिख रहा है तथा व्यक्ति की टेबल पर कुछ दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही --

जिसमें से एक तार से जुडते हुए आ रहे है तथा पीछे की तरफ पहाड़ दिखाइ दे रहे हैं और कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं और ट्रेन की आगे तरफ एक कुर्सी पड़ी दिखाई दे रही है जो --

इसमे एक व्यक्ति फोन से फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहा है तथा बाई तरफ एक छोटी बच्ची बैठी हुई दिख रही है।

यह फोटो किसी स्विमिंग पूल का दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल के अंदर एक झूला लगा हुआ है।

उल्टी दिशा मे जाते हुए दिख रहे हैं। एक व्यक्ति के हाथ मे ठेला भी लगा हुआ दिख रहा है। उस व्यक्ति ने सर पर कपड़ा बांधा --